है यहाँ पे झाड़ फूक का काम हो रहा है आदमी सब को बहुत है।

बस को माला पहनाया गया है उजला कलर के बस है ये नया-नया बस है बस में घुमने में बहुत आनंद आता है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

गेट है लोहे की गेट है एक मोटरसाइकिल है तीन-चार आदमी यहाँ पे खड़े है तीनों मुड़े हुए है एक आदमी मोटरसाइकिल को पकड़ के खड़े है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एक कार खड़ा है ।